यहां पर एक आदमी के हाथ में कुछ है।

आसपास पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

दुकान में एक सीढ़ी भी है।